यहाँ पर बोहोत सारी चूड़ी दिखाई दे रहे हैं। चूड़ी जो है जिसमें कुछ कंगन भी रखे हुए हैं।

यहा पर बहुत जिम है जिम मे काफी प्रकार कि मशीन रखी गई है जोकि लोहे कि है।

और यहाँ पे खम्बे बनाये गए है जोकि सीमेंट के है यहाँ पर एक खिड़की लगाई है जोकि अभी खुली हुई है आधी और आधी बंद है।

यहाँ पर एक डेस्क रखी गई है डेस्क मे कुछ सामान है और एक स्टूल है जो कि स्टील का है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है दरवाजा बना हुआ जो कि अभी खुला है।

यहाँ पर बहुत बड़ा खेत दिखाई दे रहा है। खेत काफी बड़ा है। इसके आधे खेत मे फसल लगी हुई है और आधे मे कटी फसल डली हुई हैऔर आधा खेत जो है खाली डला हुआ है।

यहाँ पर एक गुलदस्ता है। गुलदस्ते के साथ-साथ नीचे की ओर भी एक गुलदस्ता है। देखने पे लग रहा हैं इसे बोहोत अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

सामने की ओर में बिल्डिंग भी है बिल्डिंग जो है सफ़ेद कलर की है और कुछ कच्चे मकान भी है यहाँ पर दो बोरिया दिख रही हैं जो कि प्लास्टिक की हैं और एक रेलिंग पाइप की दी गयी है आसमान है |

यहां पे एक दुकान है। दुकान जो है काफी बड़ी है और ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है यादव मेडिकल । देखने पर लग रहा है कि यह मेडिकल है और यहां पर बोहत सारी दवाइयां रखी गई हैं। सामने एक शोकेस रखा हुआ है--

पे एक दुकान है | दुकान को देख कर लग रहा है कि कोई स्टूडियो है क्युकि इसपे ऊपर की साइड बैनर छपा हुआ है जिसमें लिखा गया है रॉयल फोटो स्टूडियो

और यहाँ पर दो बैनर टंगे हुए हैं सामने की ओर में एक शोकेस लगाया गया है जिसमें कुछ सामान रखा गया है एक चेयर भी रखी हुई है लाल कलर की और कुछ बेनर्स हैं |

सामने एक आदमी हैं जो पीले कलर के कपड़े पहने हुए है और खम्बा भी बना हुआ हैं खम्बा जो हैं वो सीमेंट का है और कुछ रेलिंग लगाई गई है जो स्टील की है।

यहां पर बोहोत सारे पेड़ रखे गए हैं। पेड़ जो है मिट्टी में रखे गए हैं। मिट्टी जो है वो एक पॉलिथीन में रखी गई है। पेड़ों को देखकर लग रहा है यह फ्लावर्स के पेड़ हैं।